आस-पास दुकाने भी नज़र आ रहे है जैसे की--

ये बिल्डिंग बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा है वैसे आस-पास पेड़-पौधे भी नज़र रहा है।

जैसे की इमेज में गाड़िया दिखाई दे रही है कार दिखाई दे रही है बाइक दिखाई दे और साइकिल भी दिखाई दे रही है जैसे आस-पास पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है।

और पौधे भी बहुत नजर आये और आगे में पहाड़ भी दिखाई दे रहा है है की बादल भी --

कुछ लोग पैसे निकलते हुए नज़र आ रहे है।

जैसे की इमेज में मैडिकल का नजर आ रहा है।

ई ई ककर कुछ सामान लेते हुए नजर आ रहा है की --

और वेसे ही ऊपर बदाल भी दिखाई दे रहा है जैसे की बदाल बहुत ही सुन्दर दिखाई दे रहा है और आस पास छोटे।

ये पार्क पौधे भी दिखाई दे रहे है काफी और दिखने में भी बहुत ही --

मछलियां भी दिखाई दे रहे है।

और जैसे की इमेज इमेज मे जिम दिखाई दे रहा है जिम के बोहत सारे सामान भी दिखाई दे रहा है जैसे की फैन भी दिखाई ये जिम --

गेट भी दिखाई दे रहे है।

ये आस पास बहुत सारे पेड पौधे भी दिखाई दे रहे है।

और बादल भी दिखाई दे रहा है आस - पास बहुत --

ज्यादा ही पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है जैसे की नजारा--

लेफ्ट कन्या स्कूल के सामने पड़ता है जैसे की ये--

जैसे की इमेज में पेड़-पौधे दिख रहा है और यहाँ--

दिखाई दे रहा है और बोर्ड भी दिखाई दे रहा हैं जैसे की बादल भी--